यहां मेरे सामने एक बो-बैनर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे ई.सी.जी. ई.ई.ई. इंजीनियरिंग की बुके भी दिख मिलती मिली जाती है जहां पर मेरे सामने एक व्यक्ति आता हुआ भी दिखाई दे रहा है।

इस व्यक्ति ने चश्मा पहना हुआ भी दिखाई दे रहा है जहां पर मुझे उसके पास की तरफ एक दूसरा व्यक्ति बाहर की तरफ देखता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके पास मे थोड़ा सामान भी दिखाई दे रहा है ये सुबह का फोटो दिखाई दे रहा है।

मेरे सामने एक बड़ा सा मटका रखा हुआ दिखाई दे रहा है जहां बहुत सारे होल दिखाई दे रहा है | ये एक बड़ा ही एंटीक पीस दिखायी दे रहा है।

ये एक प्राचीन मूर्तियां दिखाई दे रही हैं जो कि एक हैंडमेड मूर्तियां होती हैं और ये बहुत ही महंगी दिखाई दे रही हैं।